एक आदमी बैठा हुआ है जिसने ब्लू कलर की जींस और चप्पल पहनी हुई है।

कुछ बिस्किट्स और नीचेवाल बाजू एक डस्टबिन और चप्पल रखी गई है और यहां के नीचे फाइल्स भी रखे हुए हैं टेबल में।

कार्स ठहरें हुए हैं पार्किंग में और बाइक्स भी हैं यहां पर और एक ब्राउन कलर की बिल्डिंग भी है यहां पर।

एम_वाइ_टी_एस बोलकर कुछ लिखा हुआ हैजो ब्लैक कलर के बोर्ड पर है।

ये एक रूम है इसमें बहुत सारे कर्टेंस लगाए हुए हैं बहुत ब्यूटीफुल है यहां पर कुछ चेड्स भी रखे हुए हैं।

और यहां पर छोटी छोटी घास उग रही है और यहां पीछे भी बहोत सा--

एक झरना है जिसमें से बहुत सारा वाइट कलर का पानी आ रहा है।

ग्रीन ग्रीन झाड़ हैं यहां पर पूरी ग्रीनरी है यहां पर बहुत बड़े बड़े स्टोंस है।

और यहाँ ऊपर भी जंगली-जंगली झाड़ लगे हुए हैंऔर यहाँ पर दिन का वक्त है।

यहां पर कुछ लड़कियां डांस कर रही हैं इन इन्हों सबने जींस पाइंट पहना हुआ है और इन्होंने एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे का पोज दिया है।

यहां पर दो ग्राहक खेरे हुए हैं जिसने एक रेड कलर की स्वेटर और ब्लू कलर की स्वेटर पहनी एक बूढ़े आदमी ने ग्रीन कलर का गमला बांधा हुआ हैऔर यहां पर चर्च में --

और यहां पर बहुत सारे छोटे-बड़े बल्पों से डेकोरेशन की गई है और यहां पर --

पार्क की गई है कार पार्क की गई है वाइट कलर के कार है सिल्वर कलर के कार है यहां पर और बड़े-बड़े पेड़ भी हैं सूखा पेड़ है एक।